मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार
मनुष्य का मन ही ऐसा है कि वर्षाकाल मन के लिये बड़ा लुभावना काल होता है
पशु पक्षी पौधे प्रकृति हर कोई वर्षा के आगमन पर प्रफुल्लित हो जाते हैं
लेकिन कभीकभी वर्षा जब विकराल रूप लेती है तब पता चलता है कि पानी की विनाश करने की भी कितनी बड़ी ताक़त होती है
प्रकृति हमें जीवन देती है हमें पालती है लेकिन कभीकभी बाढ़ भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदायें उसका भीषण स्वरूप बहुत विनाश कर देता है
बदलते हुए मौसमचक्र और पर्यावरण में जो बदलाव आ रहा है उसका बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहा है
पिछले कुछ दिनों से भारत के कुछ हिस्सों में विशेषकर असम नॉर्थईस्ट गुजरात राजस्थान बंगाल के कुछ हिस्से अतिवर्षा के कारण प्राकृतिक आपदा झेलनी पड़ी है
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पूरी मॉनिटरिंग हो रही है
व्यापक स्तर पर राहत कार्य किए जा रहे हैं
जहाँ हो सके वहाँ मंत्रिपरिषद के मेरे साथी भी पहुँच रहे हैं
राज्य सरकारें भी अपनेअपने तरीक़े से बाढ़ पीड़ितों को मदद करने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं
सामाजिक संगठन भी सांस्कृतिक संगठन भी सेवाभाव से काम करने वाले नागरिक भी ऐसी परिस्थिति में लोगों को मदद पहुँचाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं
भारत सरकार की तरफ़ से सेना के जवान हों वायु सेना के लोग हों एनडीआरएफ के लोग हों पैरामिलिटरी फोर्सेस हों हर कोई ऐसे समय आपदा पीड़ितों की सेवा करने में जीजान से जुड़ जाते हैं
बाढ़ से जनजीवन काफी अस्तव्यस्त हो जाता है
फसलों पशुधन इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स इलेक्ट्रिसिटी कम्यूनिकेशन लिंक्स सब कुछ प्रभावित हो जाता है
खास कर के हमारे किसान भाइयों को फ़सलों को खेतों को जो नुकसान होता है तो इन दिनों तो हमने इंश्योरेंस कंपनियों को और विशेष करके क्रॉप इंश्योरेंस कंपनियों को भी प्रोएक्टिव होने के लिये योजना बनाई है ताकि किसानों के क्लेम सेटलमेंट तुरंत हो सकें
और बाढ़ की परिस्थिति को निपटने के लिये 24×7 कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर 1078 लगातार काम कर रहा है
लोग अपनी कठिनाइयाँ बताते भी हैं
वर्षा ऋतु के पूर्व अधिकतम स्थानों पर मॉक ड्रिल करके पूरे सरकारी तंत्र को तैयार किया गया
एनडीआरएफ की टीमें लगाई गईं
स्थानस्थान पर आपदामित्र बनाना और आपदामित्र के doएस donटीएस की ट्रेनिंग करना वॉलंटियर्स तय करना एक जनसंगठन खड़ा करकरके ऐसी परिस्थिति में काम करना
इन दिनों मौसम का जो पूर्वानुमान मिलता है अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी है स्पेस साइंस का भी बहुत बड़ा रोले रहा है उसके कारण क़रीबक़रीब अनुमान सही निकलते हैं
धीरेधीरे हम लोग भी स्वभाव बनाएँ कि मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार अपने कार्यकलापों की भी रचना कर सकते हैं तो उससे हम नुकसान से बच सकते हैं
जब भी मैं मन की बात के लिये तैयारी करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ मुझसे ज्यादा देश के नागरिक तैयारी करते हैं
इस बार तो जीएसटी को लेकर के इतनी चिट्ठियाँ आई हैं इतने सारे फोन कॉल आए हैं और अभी भी लोग जीएसटी के संबंध में खुशी भी व्यक्त करते हैं जिज्ञासा भी व्यक्त करते हैं
एक फोन कॉल मैं आपको भी सुनाता हूँ
नमस्कार प्रधानमंत्री जी मैं गुड़गांव से नीतू गर्ग बोल रही हूँ
मैंने आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे की स्पीच सुनी और बहुत प्रभावित हुई
इसी तरह हमारे देश में पिछले महीने आज ही की तारीख़ पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी की शुरुआत हुई
क्या आप बता सकते हैं कि जैसा सरकार ने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही रिजल्ट एक महीने बाद आ रहे हैं या नहीं मैं इसके बारे में आपके विचार सुनना चाहूँगी धन्यवाद
जीएसटी के लागू हुए क़रीब एक महीना हुआ है और उसके फ़ायदे दिखने लगे हैं
और मुझे बहुत संतोष होता है खुशी होती है जब कोई ग़रीब मुझे चिट्ठी लिख करके कहता है कि जीएसटी के कारण एक ग़रीब की ज़रुरत की चीज़ों में कैसे दाम कम हुए हैं चीज़ें कैसे सस्ती हुई हैं
अगर नॉर्थईस्ट दूरसुदूर पहाड़ों में जंगलों में रहने वाला कोई व्यक्ति चिट्ठी लिखता है कि शुरू में डर लगता था कि पता नहीं क्या है लेकिन अब जब मैं उसमें सीखनेसमझने लगा तो मुझे लगता है पहले से ज़्यादा आसान हो गया काम
व्यापार और आसान हो गया
और सबसे बड़ी बात है ग्राहकों का व्यापारी के प्रति भरोसा बढ़ने लगा है
अभी मैं देख रहा था कि ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर कैसे जीएसटी का इम्पैक्ट पड़ा
कैसे अब ट्रकों की आवाजाही बढ़ी है दूरी तय करने में समय कैसे कम हो रहा है हाइवेज क्लटर फ्री हुए हैं
ट्रकों की गति बढ़ने के कारण पॉल्यूशन भी कम हुआ है
सामान भी बहुत जल्दी से पहुँच रहा है
ये सुविधा तो है ही लेकिन साथसाथ आर्थिक गति को भी इससे बल मिलता है
पहले अलगअलग टैक्स स्ट्रक्चर होने के कारण ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर का अधिकतम रिसोर्स पेपरवर्क मेंटेन करने में लगता था और उसको हर स्टेट के अन्दर अपने नयेनये वेयरहाउस बनाने पड़ते थे
जीएसटी जिसे मैं गुड एंड सिम्पल टैक्स कहता हूँ सचमुच में उसने हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव और बहुत ही कम समय में उत्पन्न किया है
जिस तेज़ी से स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है जिस तेज़ी से माइग्रेशन हुआ है नये रजिस्ट्रेशन हुए हैं इसने पूरे देश में एक नया विश्वास पैदा किया है
और कभीनकभी अर्थव्यवस्था के पंडित मैनेजमेंट के पंडित टेक्नोलॉजी के पंडित भारत के जीएसटी के प्रयोग को विश्व के सामने एक मॉडेल के रूप में रिसर्च करके ज़रूर लिखेंगे
दुनिया की कई युनिवर्सिटियों के लिए एक केस स्टडी बनेगा
क्योंकि इतने बड़े स्केल पर इतना बड़ा चंगे और इतने करोड़ों लोगों के इन्वॉल्वमेंट के साथ इतने बड़े विशाल देश में उसको लागू करना और सफलतापूर्वक आगे बढ़ना ये अपनेआप में सफलता की एक बहुत बड़ी ऊँचाई है
विश्व ज़रूर इस पर अध्ययन करेगा
और जीएसटी लागू किया है सभी राज्यों की उसमें भागीदारी है सभी राज्यों की ज़िम्मेवारी भी है
सारे निर्णय राज्यों ने और केंद्र ने मिलकर के सर्वसम्मति से किए हैं
और उसी का परिणाम है कि हर सरकार की एक ही प्राथमिकता रही कि जीएसटी के कारण ग़रीब की थाली पर कोई बोझ न पड़े
और जीएसटी App पर आप भलीभाँति जान सकते हैं कि जीएसटी के पहले जिस चीज़ का जितना दाम था तो नई परिस्थिति में कितना दाम होगा वो सारा आपके मोबाइल फोन पर अवेलेबल है
ओने नेशन ओने टैक्स कितना बड़ा सपना पूरा हुआ
जीएसटी के मसले को मैंने देखा है कि जिस प्रकार से तहसील से ले करके भारत सरकार तक बैठे हुए सरकार के अधिकारियों ने जो परिश्रम किया है जिस समर्पण भाव से काम किया है एक प्रकार से जो फ्रेंडली एनवायर्नमेंट बना सरकार और व्यापारियों के बीच सरकार और ग्राहकों के बीच उसने विश्वास को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है
मैं इस कार्य से लगे हुए सभी मंत्रालयों को सभी विभागों को केंद्र और राज्य सरकार के सभी मुलाज़िमों को ह्दय से बहुतबहुत बधाई देता हूँ
जीएसटी भारत की सामूहिक शक्ति की सफलता का एक उत्तम उदाहरण है
यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है
और ये सिर्फ टैक्स रिफॉर्म नहीं है एक नयी ईमानदारी की संस्कृति को बल प्रदान करने वाली अर्थव्यवस्था है
एक प्रकार से एक सामाजिक सुधार का भी अभियान है
मैं फिर एक बार सरलतापूर्वक इतने बड़े प्रयास को सफल बनाने के लिए कोटिकोटि देशवासियों को कोटिकोटि वंदन करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियों अगस्त महीना क्रांति का महीना होता है
सहज रूप से ये बात हम बचपन से सुनते आए हैं और उसका कारण है 1 अगस्त 1920 असहयोग आन्दोलन प्रारंभ हुआ
9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारंभ हुआ जिसे अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है और 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद हुआ
एक प्रकार से अगस्त महीने में अनेक घटनायें आज़ादी की तवारीख़ के साथ विशेष रूप से जुड़ी हुई हैं
इस वर्ष हम भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट इस आन्दोलन की 75वीं वर्षगाँठ मनाने जा रहे हैं
लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि भारत छोड़ो ये नारा डॉ यूसुफ़ मेहर अली ने दिया था
हमारी नयी पीढ़ी को जानना चाहिए कि 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था
1857 से 1942 तक जो आज़ादी की ललक के साथ देशवासी जुड़ते रहे जूझते रहे झेलते रहे इतिहास के पन्ने भव्य भारत के निर्माण के लिए हमारी प्रेरणा हैं
हमारे आज़ादी के वीरों ने त्याग तपस्या बलिदान दिए हैं उससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है
भारत छोड़ो आन्दोलन भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण संघर्ष था
इसी आन्दोलन ने ब्रिटिशराज से मुक्ति के लिये पूरे देश को संकल्पित कर दिया था
ये वो समय था जब अंग्रेज़ी सत्ता के विरोध में भारतीय जनमानस हिंदुस्तान के हर कोने में गाँव हो शहर हो पढ़ा हो अनपढ़ हो ग़रीब हो अमीर हो हर कोई कंधेसेकंधा मिला करके भारत छोड़ो आन्दोलन का हिस्सा बन गया था
जनआक्रोश अपनी चरम सीमा पर था
महात्मा गाँधी के आह्वान पर लाखों भारतवासी करो या मरो के मंत्र के साथ अपने जीवन को संघर्ष में झोंक रहे थे
देश के लाखों नौजवानों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी किताबें छोड़ दी थीं
आज़ादी का बिगुल बजा वो चल पड़े थे
9 अगस्त भारत छोड़ो आन्दोलन महात्मा गाँधी ने आह्वान तो किया लेकिन सारे बड़े नेता अंग्रेज़ सल्तनत ने जेल में हर किसी को डाल दिया और वो कालखंड था कि देश में सेकंड जनरेशन की लीडरशिप ने डॉ लोहिया जयप्रकाश नारायण जैसे महापुरुषों ने अग्रिम भूमिका निभाई थी
असहयोग आन्दोलन और भारत छोड़ो आन्दोलन 1920 और 1942 महात्मा गाँधी के दो अलगअलग रूप दिखाई देते हैं
असहयोग आन्दोलन के रूपरंग अलग थे और 42 की वो स्थिति आई तीव्रता इतनी बढ़ गई कि महात्मा गाँधी जैसे महापुरुष ने करो या मरो का मंत्र दे दिया
इस सारी सफलता के पीछे जनसमर्थन था जनसामर्थ्य थी जनसंकल्प था जनसंघर्ष था
पूरा देश एक होकर के लड़ रहा था
और मैं कभीकभी सोचता हूँ अगर इतिहास के पन्नों को थोड़ा जोड़ करके देखें तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ
1857 से प्रारंभ हुआ स्वतंत्रता संग्राम 1942 तक हर पल देश के किसीनकिसी कोने में चलता रहा
इस लम्बे कालखंड ने देशवासियों के दिल में आज़ादी की ललक पैदा कर दी
हर कोई कुछनकुछ करने के लिये प्रतिबद्ध हो गया
पीढ़ियाँ बदलती गईं लेकिन संकल्प में कोई कमी नहीं आई
लोग आते गए जुड़ते गए जाते गए नये आते गए नये जुड़ते गए और अंग्रेज़ सल्तनत को उखाड़ करके फेंकने के लिये देश हर पल प्रयास करता रहा
1857 से 1942 तक के इस परिश्रम ने इस आन्दोलन ने एक ऐसी स्थिति पैदा की कि 1942 इसकी चरम सीमा पर पहुँचा और भारत छोड़ो का ऐसा बिगुल बजा कि 5 वर्ष के भीतरभीतर 1947 में अंग्रेज़ों को जाना पड़ा
1857 से 1942 आज़ादी की वो ललक जनजन तक पहुँची
और 1942 से 1947 पाँच साल एक ऐसा जनमन बन गया संकल्प से सिद्धि के पाँच निर्णायक वर्ष के रूप में सफलता के साथ देश को आज़ादी देने का कारण बन गए
ये पाँच वर्ष निर्णायक वर्ष थे
अब मैं आपको इस गणित के साथ जोड़ना चाहता हूँ
1947 में हम आज़ाद हुए
आज 2017 है
क़रीब 70 साल हो गए
सरकारें आईंगईं
व्यवस्थायें बनीं बदलीं पनपीं बढ़ीं
देश को समस्याओं से मुक्त कराने के लिये हर किसी ने अपनेअपने तरीक़े से प्रयास किए
देश में रोज़गार बढ़ाने के लिये ग़रीबी हटाने के लिये विकास करने के लिये प्रयास हुए
अपनेअपने तरीक़े से परिश्रम भी हुआ
सफलतायें भी मिलीं
अपेक्षायें भी जगीं
जैसे 1942 टो 1947 संकल्प से सिद्धि के एक निर्णायक पाँच वर्ष थे
मैं देख रहा हूँ कि 2017 से 2022 संकल्प से सिद्धि के और एक पांच साल का तबका हमारे सामने आया है
इस 2017 के 15 अगस्त को हम संकल्प पर्व के रूप में मनाएँ और 2022 में आज़ादी के जब 75 साल होंगे तब हम उस संकल्प को सिद्धि में परिणत करके ही रहेंगे
अगर सवासौ करोड़ देशवासी 9 अगस्त क्रांति दिवस को याद करके इस 15 अगस्त को हर भारतवासी संकल्प करे व्यक्ति के रूप में नागरिक के रूप में मैं देश के लिए इतना करके रहूँगा परिवार के रूप में ये करूँगा समाज के रूप में ये करूँगा गाँव और शहर के रूप में ये करूँगा सरकारी विभाग के रूप में ये करूँगा सरकार के नाते ये करूँगा
करोड़ोंकरोड़ों संकल्प हों
करोड़ोंकरोड़ों संकल्प को परिपूर्ण करने के प्रयास हों
तो जैसे 1942 टो 1947 पाँच साल देश को आज़ादी के लिए निर्णायक बन गए ये पांच साल 2017 से 2022 के भारत के भविष्य के लिए भी निर्णायक बन सकते हैं और बनाने हैं
पांच साल बाद देश की आज़ादी के 75 साल मनाएंगे
तब हम सब लोगों को दृढ़ संकल्प लेना है आज
2017 हमारा संकल्प का वर्ष बनाना है
यही अगस्त मास संकल्प के साथ हमें जुड़ना है और हमें संकल्प करना है
गंदगी भारत छोड़ो ग़रीबी भारत छोड़ो भ्रष्टाचार भारत छोड़ो आतंकवाद भारत छोड़ो जातिवाद भारत छोड़ो सम्प्रदायवाद भारत छोड़ो
आज आवश्यकता करेंगे या मरेंगे की नहीं बल्कि नये भारत के संकल्प के साथ जुड़ने की है जुटने की है जीजान से सफलता पाने के लिये पुरुषार्थ करने की है
संकल्प को लेकर के जीना है जूझना है
आइए इस अगस्त महीने में 9 अगस्त से संकल्प से सिद्धि का एक महाभियान चलाएं
प्रत्येक भारतवासी सामाजिक संस्थायें स्थानीय निकाय की इकाइयाँ स्कूल कॉलेज अलगअलग संगठन हर एक न्यू इंडिया के लिए कुछनकुछ संकल्प लें
एक ऐसा संकल्प जिसे अगले 5 वर्षों में हम सिद्ध कर के दिखाएँगे
युवा संगठन छात्र संगठन एनजीओ आदि सामूहिक चर्चा का आयोजन कर सकते हैं
नयेनये आईडीईए उजागर कर सकते हैं
एक राष्ट्र के रूप में हमें कहाँ पहुंचना है एक व्यक्ति के नाते उसमें मेरा क्या योगदान हो सकता है आइए इस संकल्प के पर्व पर हम जुड़ें
मैं आज विशेष रूप से ओनलाइन वर्ल्ड क्योंकि हम कहीं हों या न हों लेकिन ओनलाइन तो ज़रुर होते हैं जो ओनलाइन वाली दुनिया है और खासकर के मेरे युवा साथियों को मेरे युवा मित्रों को आमंत्रित करता हूँ कि नये भारत के निर्माण में वे इनोवेटिव तरीक़े से योगदान के लिए आगे आएँ
टेक्नोलॉजी का उपयोग करते वीडियो पोस्ट ब्लॉग आलेख नयेनये आईडीईए वो सभी बातें लेकर के आएँ
इस मुहिम को एक जन आंदोलन में परिवर्तित करें
NarendraModiApp पर भी युवा मित्रों के लिये क्विट इंडिया क्विज लॉन्च किया जाएगा
यह क्विज युवाओं को देश के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने और स्वतंत्रता संग्राम के नायकों से परिचित कराने का एक प्रयास है
मैं मान रहा हूँ कि आप ज़रुर इसका व्यापक प्रचार करें प्रसार करें
मेरे प्यारे देशवासियों 15 अगस्त देश के प्रधान सेवक के रूप में मुझे लाल क़िले से देश के साथ संवाद करने का अवसर मिलता है
मैं तो एक निमित्तमात्र हूँ
वहाँ वो एक व्यक्ति नहीं बोलता है
लाल क़िले से सवासौ करोड़ देशवासियों की आवाज़ गूँजती है
उनके सपनों को शब्दबद्ध करने की कोशिश होती है और मुझे ख़ुशी है कि पिछले 3 साल से लगातार 15 अगस्त निमित्त देश के हर कोने से मुझे सुझाव मिलते हैं कि मुझे 15 अगस्त पर क्या कहना चाहिए किन मुद्दों को लेना चाहिए इस बार भी मैं आपको निमंत्रित करता हूँ
माइगोव पर या तो NarendraModiApp पर आप अपने विचार मुझे ज़रूर भेजिए
मैं स्वयं ही उसे पढ़ता हूँ और 15 अगस्त को जितना भी समय मेरे पास है उसमें इसको प्रगट करने का प्रयास करूँगा
पिछले 3 बार के मुझे मेरे 15 अगस्त के भाषणों में एक शिकायत लगातार सुनने को मिली है कि मेरा भाषण थोड़ा लम्बा हो जाता है
इस बार मैंने मन में कल्पना तो की है कि मैं इसे छोटा करूँ
ज्यादा से ज्यादा 404550 मिनट में पूरा करूँ
मैंने मेरे लिये नियम बनाने की कोशिश की है पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा
लेकिन मैं इस बार कोशिश करने का इरादा रखता हूँ कि मैं मेरा भाषण छोटा कैसे करूँ देखते हैं सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है
मैं देशवासियों एक और भी बात आज करना चाहता हूँ
भारत की अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक अर्थशास्त्र है
और उसको हमने कभी भी कम नहीं आँकना चाहिए
हमारे त्योहार हमारे उत्सव वो सिर्फ़ आनंदप्रमोद के ही अवसर हैं ऐसा नहीं है
हमारे उत्सव हमारे त्योहार एक सामाजिक सुधार का भी अभियान हैं
लेकिन उसके साथसाथ हमारे हर त्योहार ग़रीबसेग़रीब की आर्थिक ज़िन्दगी के साथ सीधा सम्बन्ध रखते हैं
कुछ ही दिन के बाद रक्षाबंधन जन्माष्टमी उसके बाद गणेश उत्सव उसके बाद चौथ चन्द्र फिर अनंत चतुर्दशी दुर्गा पूजा दिवाली एककेबाद एककेबादएक और यही समय है जब ग़रीब के लिये आर्थिक उपार्जन के लिये अवसर मिलता है
और इन त्योहारों में एक सहज स्वाभाविक आनंद भी जुड़ जाता है
त्योहार रिश्तों में मिठास परिवार में स्नेह समाज में भाईचारा लाते हैं
व्यक्ति और समाज को जोड़ते हैं
व्यक्ति से समष्टि तक की एक सहज यात्रा चलती है
अहम् से वयम् की ओर जाने का एक अवसर बन जाती है
जहाँ तक अर्थव्यवस्था का सवाल है राखी के कई महीनों पहले से सैकड़ों परिवारों में छोटेछोटे घरेलू उद्योगों में राखियाँ बनाना शुरू हो जाती हैं
खादी से लेकर के रेशम के धागों की न जाने कितनी तरह की राखियाँ और आजकल तो लोग होममेड राखियों को ज्यादा पसंद करते हैं
राखी बनाने वाले राखियाँ बेचने वाले मिठाई वाले हज़ारोंसैकड़ों का व्यवसाय एक त्योहार के साथ जुड़ जाता है
हमारे अपने ग़रीब भाईबहन परिवार इसी से तो चलते हैं
हम दीपावली में दीप जलाते हैं सिर्फ़ वो प्रकाशपर्व है ऐसा ही नहीं है वो सिर्फ़ त्योहार है घर का सुशोभन है ऐसा नहीं है
उसका सीधासीधा सम्बन्ध छोटेछोटे मिट्टी के दिये बनाने वाले उन ग़रीब परिवारों से है
लेकिन जब आज मैं त्योहारों और त्योहार के साथ जुड़े ग़रीब की अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ तो साथसाथ मैं पर्यावरण की भी बात करना चाहूँगा
मैंने देखा है कि कभीकभी मैं सोचता हूँ कि मुझसे भी देशवासी ज़्यादा जागरूक हैं ज़्यादा सक्रिय हैं
पिछले एक महीने से लगातार पर्यावरण के प्रति सजग नागरिकों ने मुझे चिट्ठियाँ लिखी हैं
और उन्होंने आग्रह किया है कि आप गणेश चतुर्थी में इकोफ्रेंडली गणेश की बात समय से पहले बताइए ताकि लोग मिट्टी के गणेश की पसंद पर अभी से योजना बनाएँ
मैं सबसे पहले तो ऐसे जागरूक नागरिकों का आभारी हूँ
उन्होंने मुझे आग्रह किया है कि मैं समय से पहले इस विषय पर कहूँ
इस बार सार्वजनिक गणेशोत्सव का एक विशेष महत्व है
लोकमान्य तिलक जी ने इस महान परम्परा को प्रारंभ किया था
ये वर्ष सार्वजनिक गणेशोत्सव का 125वाँ वर्ष है
सवासौ वर्ष और सवासौ करोड़ देशवासी लोकमान्य तिलक जी ने जिस मूल भावना से समाज की एकता और समाज की जागरूकता के लिये सामूहिकता के संस्कार के लिये सार्वजनिक गणेशोत्सव प्रारंभ किया था हम फिर से एक बार गणेशोत्सव के इस वर्ष में निबंध स्पर्द्धायें करें चर्चा सभायें करें लोकमान्य तिलक के योगदान को याद करें
और फिर से तिलक जी की जो भावना थी उस दिशा में हम सार्वजनिक गणेशोत्सव को कैसे ले जाएँ
उस भावना को फिर से कैसे प्रबल बनाएं और साथसाथ पर्यावरण की रक्षा के लिए इकोफ्रेंडली गणेश मिट्टी से बने हुए ही गणेश ये हमारा संकल्प रहे
और इस बार तो मैंने बहुत जल्दी कहा है मुझे ज़रूर विश्वास है कि आप सब मेरे साथ जुड़ेंगे और इससे लाभ ये होगा कि हमारे जो ग़रीब कारीगर हैं ग़रीब जो कलाकार हैं जो मूर्तियाँ बनाते हैं उनको रोज़गार मिलेगा ग़रीब का पेट भरेगा
आइए हम हमारे उत्सवों को ग़रीब के साथ जोड़ें ग़रीब की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ें हमारे त्योहार का आनंद ग़रीब के घर का आर्थिक त्योहार बन जाए आर्थिक आनंद बन जाए ये हम सब का प्रयास रहना चाहिए
मैं सभी देशवासियों को आने वाले अनेकविद त्योहारों के लिये उत्सवों के लिये बहुतबहुत शुभकामनायें देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियों हम लोग लगातार देख रहे हैं कि शिक्षा का क्षेत्र हो आर्थिक क्षेत्र हो सामाजिक क्षेत्र हो खेलकूद हो हमारी बेटियाँ देश का नाम रोशन कर रही हैं नईनई ऊँचाइयाँ प्राप्त कर रही हैं
हम देशवासियों को हमारी बेटियों पर गर्व हो रहा है नाज़ हो रहा है
अभी पिछले दिनों हमारी बेटियों ने महिला क्रिकेट विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया
मुझे इसी सप्ताह उन सभी खिलाड़ी बेटियों से मिलने का मौक़ा मिला
उनसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन मैं अनुभव कर रहा था कि वर्ल्ड कप जीत नहीं पाईं इसका उन पर बड़ा बोझ था
उनके चेहरे पर भी उसका दबाव था तनाव था
उन बेटियों को मैंने कहा और मैंने मेरा एक अलग मूल्यांकन दिया
मैंने कहा देखिए आजकल मीडिया का ज़माना ऐसा है कि अपेक्षायें इतनी बढ़ा दी जाती हैं इतनी बढ़ा दी जाती हैं और जब सफ़लता नहीं मिलती है तो वो आक्रोश में परिवर्तित भी हो जाती है
हमने कई ऐसे खेल देखे हैं कि भारत के खिलाड़ी अगर विफल हो गए तो देश का ग़ुस्सा उन खिलाड़ियों पर टूट पड़ता है
कुछ लोग तो मर्यादा तोड़ करके कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं ऐसी चीज़ें लिख देते हैं बड़ी पीड़ा होती है
लेकिन पहली बार हुआ कि जब हमारी बेटियाँ विश्व कप में सफ़ल नहीं हो पाईं तो सवासौ करोड़ देशवासियों ने उस पराजय को अपने कंधे पर ले लिया
ज़रासा भी बोझ उन बेटियों पर नहीं पड़ने दिया इतना ही नहीं इन बेटियों ने जो किया उसका गुणगान किया उनका गौरव किया
मैं इसे एक सुखद बदलाव देखता हूँ और मैंने इन बेटियों को कहा कि आप देखिए ऐसा सौभाग्य सिर्फ़ आप ही लोगों को मिला है
आप मन में से निकाल दीजिए कि आप सफल नहीं हुए हैं
मैच जीते या न जीते आप ने सवासौ करोड़ देशवासियों को जीत लिया है
सचमुच में हमारे देश की युवा पीढ़ी ख़ासकर के हमारी बेटियाँ सचमुच में देश का नाम रोशन करने के लिए बहुतकुछ कर रही हैं
मैं फिर से एक बार देश की युवा पीढ़ी को विशेषकर के हमारी बेटियों को ह्रदय से बहुतबहुत बधाई देता हूँ
शुभकामनायें देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियों फिर एक बार स्मरण कराता हूँ अगस्त क्रान्ति को फिर एक बार स्मरण करा रहा हूँ 9 अगस्त को फिर एक बार स्मरण करा रहा हूँ 15 अगस्त को फिर एक बार स्मरण करा रहा हूँ 2022 आज़ादी के 75 साल
हर देशवासी संकल्प करे हर देशवासी संकल्प को सिद्ध करने का 5 साल का रोडमैप तैयार करे
हम सबको देश को नयी ऊँचाइयों पर पहुँचाना है पहुँचाना है और पहुँचाना है
आओं हम मिल करके चलें कुछनकुछ करते चलें
देश का भाग्य भविष्य उत्तम हो के रहेगा इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें
बहुतबहुत शुभकामनायें